यह अब चारा खाने के लिए रेडी है क्योंकि चारा यहां पर पड़ा --

उगे कमल के पत्तों की है।

अभी इसमें कमल के फूल नहीं खिले हैं।

इसमें श्री कृष्ण का भी वॉलपेपर लगाया हुआ है।

यह लड़का पानी को क्रॉस कर रहा है।

यह फोटो एक बहोत बड़े गार्डन की लग रही है।

इस बुक शॉप पर सीढ़ियां भी लगी है क्योंकि ऊपर भी बुक्स पड़ी हुई --

और एक बाइक खड़ी है और उस पर एक आदमी भी बैठा है।

नाशपाती केला ये सब आपको देखने को मिल रहे --

कलर बहुत ही अच्छा किया हुआ है।

जैन पी_जी कॉलेज की है यह रामपुरिया कॉलेज की फोटो है जो की देखने में--

पैनासोनिक के बहुत से आइटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे।

यह फोटो किसी तैयार हो रही ऑफिस की है जहां पर --

और यहां बहोत सारी बाइक्स भी खड़ी हैं।